साइड में एक आदमी फोन पे बात कर रहा है।

यह कोई किचन का चित्र है जो किचन में एक महिला खाना बना रही है।

साइड साइड में बहोत सारे बोतलों में कुछ रखे हैं।

जिन-जिस दो टेबल में है वो दो आदमी बैठा है एक टेबल में कोई नहीं बैठा है।

टेबल पर पाँच छे सफेद कलर के प्लेटे हैं।

साइड में दो पोस्टर है और दूर में एक बहुत बड़ा पुल भी है।

और स्टेज के पीछे दो चार आदमी भी खड़े हैं पुल के ऊपर कोई चीज जा भी रहे है।

और उस ग्रिल में कुछ लोहे की जंजीर से ताले भी लगा दिए हैं।

और ऊपर में भी कुछ है तीन चक्का साइकल में है।

यह कोई कोक की दुकान का चित्र है जिसमें कुछ बोतल में पानी रखे हैं।

यह कोई घर का चित्र है जो घर सफेद कलर के पेंट से रंगा है।

बाहर की स्कूटर भी खड़े हैं और साइड में कुछ और स्कूटर है।

बिल्डिंग के कांच की खिड़कियां है।

या कोई हॉस्पिटल का चित्र है।

ऊपर में बहुत सारी लाइटे लगी हैं दूर में ब्लू कलर की लाइट है।

यह रोड के किनारे का चित्र है जो किनारे रोड के किनारे बहुत बड़े बड़े दुकानें हैं।